एक फ्रुट्स का ठेला नजर आ रहा है इस ठेले में--

अह्ह्ह्ह शायद यहा स्टेशनरी की दुकान भी--

छोटे बच्चों के लिए नेट के द्वारा बनाया गया--

एक बैग भी रखे हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में हमें एक शॉप नजर आ रही है यहां एक गैस चुल्हों की शॉप है जिसमें--

इस इमेज में एक सुंदर से हॉल में--

इस हवेली में हमें कोई भी शख्स नजर नहीं आ रहा है।

इसमें बॉक्सिंग करने के लिए दो लोड भी नजर आ रहे हैं इस जिम में नीचे की तरफ ग्रीन कार्पेटस लगाए हुए हैं।

इस शॉपिंग मॉल का नाम श्री सतगुरु टायर्स है।

इसमें ईंट की बनी दीवाल है ऊपर टीन शेड इस शॉप पर लगे हुए हैं।

कंस्ट्रक्शन चालू होने का पता चलता है और आसपास का एरिया भी इसमे काफी खुला हुआ है और आस --

यह एक लोहे की दुकान के बाहर पड़े हुए दिखाई पड़ते है।

यह इमेज एक खुली जगह की इमेज है जहां पर कुछ लोग लाइन लगाकर खड़े हुए नजर आ रहे।

टी_वी_एस स्कूटी का शोरूम नजर आ रहा है।

इस इमेज में एक कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए--

यह एक हिस्टोरिकल फोर्ट नजर आ रहा है।

डिजिटल सामग्री इसमें रखी हुई है।